सूरज दिख रहा है टावर दिख रहा है।

एक ठो ये येल्लो कलर का पेंट किया हुआ है।

दिख रहा है व्हाइट कलर का पेंटिंग किया हुआ है।

एक गाय इधर बंधा हुआ है उधर दो तीन घर दिख रहा है झोपड़ी जैसा घर भी है।

ये अंदर बहोत सारा दुकान है यहीं दिख रहा है ।

ब्राउन कलर का पेंट किया हुआ है।

ये दुकान है दुकान के अंदर आदमी बैठा हुआ है।

बहुत सारा बिल्डिंग है।

ऑफिस है भगवान जी का फोटो लगा हुआ है।

बॉक्स लगा हुआ है छोटा सा एक ठौ।

यहां कुछ दिख रहा है।

यहां पे क्लास हो रहा है।

व्हाइट ड्रेस पहनके ब्लैक ड्रेस में कुछ आदमी खड़ा है।

औरत लोग बैठी हुई है।

सीढ़ी जाय जैसा बना हुआ हैं।

बगल में दो आदमी व्हाइट कलर का कपड़ा पेहन के हाथ में झंडा लिया हुआ है।

खटिया जैसा दिख रहा है उधर साइड झूला है।

इस चित्र में दुकान है।

व्हाइट कलर का कुर्सी है।